यहाँ पे एक इन्सान खड़ा है। इस फील्ड में टोटल बाईस प्लेयर खड़े है। यहाँ पे एक टावर भी है।

इस ट्रेन इस ट्रेन इस राजधानी का इस राज्य की कोनसी राजधानी है मुझे नहीं पता है और आसमान नीला है और बादल सफ़ेद है और--

बोहोत ही चीज है वायर वायर सब है बोहोत ज्यादा ही वायर दिख रहे है।